और बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हैं।

अंदर कुछ समाने भी रखी--

जहां ऊपर एक आदमी चेयर पर बैठा है कुछ पेड़ पौधे--

कूलर फ्रिज ए_सी बेची जाती है।